और सिरिंज हुए और कैंची भी है हाथ मे ग्लवस पहन के--

और अगल-बगल में भी साड़ी रखा हुआ है उस साइड भी है। ये साड़ी के पीछे साइड और इधर व्हाइट कलर की है कुछ--

स्टेट बैंक एटीएम है ये और एक आदमी बाहर खड़ा है।

उधर बहोत सारे आदमी हैं और एक आदमी इधर झुक के कुछ उठा रहा है और कुछ निकाल रहा है उधर आदमी--

पीछे की साइड टंकी है और ये टावर बहुत लम्बा है।

शाम का समय लग रहा है बहुत सारे खिलाड़ी भी है ग्राउंड पे ग्राउंड पे हरा कलर है दो लाइट लगा हुआ है लाइट और एक छोटा लाइट भी उधर है।

खटाल में बहुत सारे अलग-अलग किस्म का सामान रखा हुआ है और ये बाहर की तरफ एक चद्दर भी है खटाल के बगल में और कलम उलम भी है खटाल में सजाया हुआ।

लाइट लगा है उधर कुर्सी पे कुछ आदमी बैठा हुआ है और कुछ आदमी खड़ा होके देख रहा है।

ए आदमी इधर है केला टांगा हुआ है उपर की साइड --

दो गधा है यहाँ पे और एक उधर फुटबॉल रखा हुआ है।

और कलर भी किया हुआ है चक्र-चक्र की त-तरह हुआ है गेट पे और दीवाल पे भी दीवाल काफी सुन्दर है।